एक आदमी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ में एक आदमी का हाथ आ रहा है और कप दे रहे हैं रुमाल पड़ी है और में चश्मे पड़ी हैं।